एक आदमी खड़ा हुआ है जो सफेद जैकेट पहन रखी है ब्लू पैंट है काले जूते है टोपी ब्लैक और सफ़ेद है।

चट्टान में एक लेग

ये जंगल है। जंगल में पेड़-पौधे हरे है।

ऑरेंज कलर है। जमुनी कलर है। येलो ग्रीन कलर है। रेड कलर है।